एक ने अपने हाथ में एक गन पकड़ रखी है सब के आंखों में कुछ लगा हुआ है।

बाहर एक टायर के ऊपर एक टायर खड़ा है।

पीछे की तरफ बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है सामने की तरफ एक घर भी दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर कई सारे किताब रखे हुए हैं पीछे की तरफ कई सारे ड्रावर दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ दीवाल दिखाई दे रही है बगल में एक और पोस्टर दिखाई दे रही है।

दिल रंग कर शेप बना हुआ है।

यह दृश्य एक दुकान का है यह दुकान टायरों का दुकान है।

इसके बगल में एक मशीन है मशीन के बगल में एक कंप्यूटर है।

अरे एक दरवाजा खुला हुआ है।

नीचे की तरफ कई सारे न्यूज़ पेपर फेंके हुए हैं।

नीचे की तरफ और भी बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

सामने की तरफ एक पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ दो आदमी भी हैं।

ऊपर की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा है हुडा रेफ्रिजेटशन ।

सभी ने अपने पेट में बहुत सारे पट्टे बांध रखे हैं।

जिसके ऊपर ग्रिल भी लगी हुई है।

सामने की तरफ ब्लू रंग का कुछ दिख भी रहा है।

पीछे की तरफ बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में एक गली है।

की तरफ सीढ़ी दिखाई दे रही है जिसके आगे रेलिंग लगी हुई है।

नीचे के तरफ कई सारे पट्टे भी रखे हुए हैं ऊपर की तरफ सटा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लाइटें लगी हुई है।

यह दृष्टि एक टूरिस्ट साइट का है सामने की तरफ पेड़ लगे हुए हैं।

पीछे की तरफ भी कई सारे पेड़ लगे हुए हैं सामने की तरफ सीढ़ी दिखाई दे रहे हैं बगल में एक आदमी भी है।

सामने की तरफ एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

दृश्य एक मंदिर है मंदिर के बगल में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक कंस्ट्रक्शन साइट का है सामने की तरफ एक मशीन है।

नीचे की तरफ बहुत सारे लोग पूजा करते दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर लगे हुए हैं।

दृश्य में एक जनरेटर है जनरेटर के पीछे एक घर है।

पीछे की तरफ एक दरवाजा है दरवाजा नीले रंग का है दरवाजा पे ताला लगा है।